इसके अंदर कुछ लोखंड के गेट्स बनाये जा रहे हैं--

इसके अंदर टेबल और चेयर्स रखी गई हैं सामने की और एक खिड़की है जिस पे परदा लगाया गया है।

टेबल के ऊपर एक पी_सी सेट किया गया है एक प्रिंटर भी दिख रहा है साइड में भी एक छोटा स्टूल रखा गया है।

और यहां बहुत सारा बगीचा है इस बगीचे में बस हरे हरे पौधे लगे हुए हैं।

पीछे तीन घर है आपको दिख रहे होंगे एक व्हाइट और एक सफेद एक नीला और एक हल्का नीला।

यहां पे पानी है शायद तैराकी करने के लिए हो।

सीढ़ियां भी रखी गई हैं और अंदर कुछ सामान रखे गए हैं।

जिसे पिंक और वाइट कलर के कपड़े से सजाया गया है।

कुछ लोग भी बातें करते हुए चलते हुए नजर आ रहे हैं।

जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे एक बड़ा सा मॉल जैसा दिख रहा है।

में कुछ लोग हैं इंक्रेडिबल थ्रेड्स पे वहां पे साड़ियां बिक रही हैं वहां पे औरतें और जेंट्स वहां पे कपड़े ले रहे हैं।

कैमरा है यहां पे पर्स वर्स लगे हुए हैं और यहां पे चेयर्स लग कुर्सियां लगी हुई हैं जिस बैठने के लिए जहां लोग बैठे हुए हैं।

जहां नीचे पत्थर रखे हुए है और कुछ लकड़ों की सीढ़ियां बनाई गई है जिसपे लोग लेके चढ़ रहे हैं।

क्रम आप देख सकते है कि एक बिल्डिंग जैसा है जिसमें लिखा है प्रवेसी ग्रा।

और नीचे बहोत सारे लोग दिख रहे है कुछ गाड़ियां भी दिख रही है।

अन्दर की ओर घर दिख रे है जो बंद है साइड की ओर भी एक बिल्डिंग दिख रहा जिसमें बाहर कंप्रेसर है।

इस चित्र मे आप देख सकते है की एक घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है।

और कुछ ग्रेप्स वाले चॉकलेट्स काजू बादाम भी दिख रहा है।

यहां पर कुछ रंग बिरंगी बैलूनों से सजाया भी गया है।

नीचे कुछ लौटे जैसा नज़र आ रहा है और इधर पिलर है जो नीले रंग का लोखंड का है ऊपर पत्थरा भी दिख रहा है।

और कुछ छोटी गाड़ियां भी नज़र आ रही होगी जो पेट्रोल भरवा रही है कुछ लोग पेट्रोल भरते नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यहां बहोत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

फोर व्हीलर भी नजर आ रही है साइड से रास्ता गुजरता हुआ नजर आ रहा है।

ऊपर की तरफ एंथोनी प्रे फॉर लिखा गया है अंदर के ओर जीसस नजर आ रहे हैं।

अंदर की ओर कुछ लोग बैठे नजर आ रहे हैं कुछ खाली कुर्सियां भी नजर आ रही हैं टेबल के साथ --

और बाहर की ओर लाल और नीले रंग के बलून भी लगाए गएं हैं कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।